वॉल के पीछे एक प्लेटफार्म जैसा दिख रहा है।

में लगे हुए हैं बहुत सारी बाइक खड़ी--

जीने बने हुए हैं जीने पर वाइट कलर की रेलिंग लगी हुई है कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं।

और कुछ कॉफी पाउडर के पैक रखे हुए--

रेड एंड व्हाइट कलर के बैलून लगे हुए हैं।

इसके ऊपर एक प्लेट रखी हुई है प्लेट के अंदर एक कटोरी है कटोरी के अंदर पेटीज रखी हुई हैं।

पेंसिल रबड़ उनका रखा है और बच्चे मास्क लगाए हुए--

कुछ मूर्तियां हैं जैसे कि भोले जी की मूर्ति है माता रानी की मूर्ति है।

हनुमान जी की मूर्ति है जो को जो कि पहाड़ों पर रखी हुई हैं।

और कुछ हरे भड़े पेड़ लगे हुए है इसके अंदर एक गार्डन है।

छोटे-छोटे घर दिख रहे हैं ग्रीन एंड येलो कलर की दीवाल दिख रही।

यहां पर एक वैद्यनाथ बोर्ड लगा हुआ है।

जहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं लोग कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं।

सामने पल एक व्हाइट कलर का घर दिख रहा है जिसमें मेहरून कलर का गेट लगा हुआ है। कुछ गमले रखे हुए हैं।

यह एक हजरतगंज का स्थान है जहां पर ब्लैक कलर की रेलिंग लगी हुई है कुछ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

शटर वाली दुकानें हैं दुकान के बाहर कुछ बोर्डे लगे हुए हैं।

एक बांस ते बंधा हुआ पल्ली लगी हुई है नाली है।

ये जगह है जहां पर व्हाइट दीवार पर येलो कलर का कुछ लगा हुआ--

यह एक शॉप है यहां पर येलो कलर एंड व्हाइट कलर के खांचों में कुछ बैडमिंटन चिड़िया फुटबॉल छोटे बॉल कॉपी रखी हुई हैं।

व्हाइट कलर की टाइल्स है बहुत लोग खरीदारी कर रहे--

बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।